अह और पीछे से कुछ बैलूंस नजर आ रहे हैं।

ये चार बॉयज हैं ये एक कमरे में खड़े हैं।

दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

यह आदमी इसने पीले कलर के कपड़े पहने हुए है और ब्राउन कलर का पैंट है।

और गेट पे बहोत सारे बलूंस लगे हुए हैं उनमें रेड व्हाइट ग्रीन --

और एक गाड़ी भी नजर आ रहीं हैं।

कौवे भी टहलते हुए नजर आ रहे।

और बहोत सारी लाइट्स यहां पे जल रही है।

तीन इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और--

एक मैदान है और यहां पे।

और ऊपर से अह कोई तार रही हैं और ग्रीन ग्रीन --